यहाँ एक कैडी व्यू प्रोफेशनल की स्किन सॉल्यूशनस की--

बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज्यादा लोग --

बैठने की काफ़ी ज्यादा जगह यहां पे गमले बहुत सारे बहुत प्यारे-प्यारे गमले अलग-अलग फ्लावर के--

बहुत खूबसूरत प्यारा सा नजारा है यहाँ पे हरियाली है।

ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यू बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं।

जो कि फिलहाल नहीं जल रही बट रात में जलती होंगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा--

प्लाजो अ प प्यारे प्यारे कुर्ते बहुत सारी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे लाइट भी बहुत ज्यादा है ।

प्याज के लहसुन के अलग-अलग कट्टे हैं थैली होने ह--

ये बाँध होन जो खुलते हैं पानी बहुत सारे बाँध होनों जो खुलते हैं तो यहाँ बहुत सारा पानी जमा हो जाता है।

और यहाँ हरियाली छोटी-छोटी घासे हैं बहुत खूबसूरत नजारा बहुत साफ सफाई है यहाँ--

येल्लो कलर का पजामा पहना है यहाँ पे घर बहुत खूबसूरत है और ये बच्चा पानी दे रहा है नदी से--

यहाँ पे काफ़ी ज्यादा लाइट्स से डेकोरेशन क्या यहाँ अलग-अलग शॉप से एक हॉट ग्रिलस की है ।

बहुत प्यारी-प्यारी शॉप्स है यहाँ पे एक टुबलर भी खड़ी हुई है वहाँ पे उसके पास एक एक्टिवा भी खड़ी हुई है।

यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी बहुत है य चेयर वगैरह भी रखी हुई है बच्चों की पिंक कलर की पूरा कलेक्शन है यहाँ पे लेडीज का बच--

यहाँ पे न्यू-न्यू पेंट हुआ है लाइट पिंक कलर का एंड वाइट कलर का यहाँ पे बालूंस लगे हुए हैं पर्पल एंड येल्लो दिवाल प एक पेंटिंग बनी हुई है ।

यहाँ पे और बहुत प्यारी-प्यारी चेयर्स रखी हुई है एक चेयर्स पे भी बलूनस रखे हुए हैं छोटी-छोटी --

पीछे भी काफ़ी ज्यादा हरियाली है बहुत कम ले रखे हुए पेड़ पौधे शाम का मौसम है बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है काफ़ी लोंग--

स्कूल का रूम में यहाँ पे काफी ज्यादा टेबल चेयर्स रखी हुई हैं।

दीवार पे एक ब्लू कलर का बॉर्ड है उसके ऊपर यहाँ पे रेड कलर की चेयर है काफ़ी टेबल वाइट कलर की काफ़ी अलग--

यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है माजा की और थम्स अप वगैरह यहाँ पे एक मीटर भी दो मीटर दिख रहे हैं।

बहुत प्यारे लग रहे हैं बाहर एक डस्टबीन है जिसका कलर ग्रीन है यहाँ पे बहुत बड़ा कूलर वगैरह फ्रीज वगैरह चॉकलेट वगैरह के--

यहाँ पे अलग-अलग तरह की जगह पे लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं एक भैया है जो कि--

यहाँ एक बहुत प्यारी जगह यहाँ पे बहुत सारे घर ओ नो बने हुए अलग-अलग तरह के--

एक घर के बालकनी में फेन लगा हुआ है इसका क्रीम एण्ड डार्क --

यहाँ से एक भैया जा रहे हैं जिन्होंने ब्लैक टी -शर्ट पहन रखी है एक बच्चा साइकिल चला के लेके जा रहा है यहाँ से लाइट वगैरह भी जल रही--

यहाँ पे एक बाहर फोर विलर खड़ी है यहाँ पे एक रेलिंग लगी हुई है स्टील की बहुत दूर तक लगी है आसपास मकान बने हुए हैं बड़े-बड़े--